और यहाँ पे जो है बहुत सारी वैरायटी की ड्रेस भी है और यहाँ पे एक डॉल को बिठा के उसको ड्रेस पहनाया गया है ये ड्रेस बहुत अच्छे है बहुत अच्छे --

जिन्होंने शूज़ पेहना है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है | यहाँ पे जो बल्ब टाइप --

और इनको शायद कोई अवार्ड भी मिला है।

यहाँ पे शायद यह शायद कोई बत्ती है यहाँ पे बहुत सारे दिया जल रहे है और यहाँ पे जो है कोई टेम्पल है जिसके अंदर लोग पूजा करने आए हुए है देखने मे बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है ये टेम्पल यहाँ पे घंटी भी है बजाने के लिए ये बहुत अच्छा ही दिख रहा है बहुत ही ज्यादा सुंदर है बहुत सारे लोग आए हुए है --

कोई बना रहा है तो कोई कुछ बना रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सब आए हुए हैं जिन्होंने अलग-अलग ड्रेस पहना हुआ है एक स्टूडेंट है जिन्होंने माक्स लगाया और बाकी सब ने नहीं लगाया ।